हर तरफ चारों तरफ बैठे हुए हैं और क्रिकेट गेम को देख रहे हैं।

और ये बहुत अच्छा लुक आ रहा हैऔर सारे लोग आराम से बैठ के क्रिकेट रहे--

यहां पर एक बॉय खड़ा हुआ है बॉय के पीछे एक हार्ट शेप बना हुआ है हार्ट शेप --

ओर ये बहोत अच्छा लुक आ रहा है और नीचे के फ्लोर में बहोत सारे बैलून गिरे हुए हैं।

बादल बिल्कुल छूते हुए दिखाई दे रहे हैं माउंटेन बहुत ऊंचाई पे हैं।

एंड फ्लो फ्लोवर शेप से इसकी डेकोरेशन हुई हुई हैऔर आगे बहुत सारे फ्लोर पॉट पड़ा हुआ हैफ्लोर पॉट बहुत अच्छा लुक दे रहे हैंये एंट्री है जहां से लोग अंदर-अंदर जाएंगे और शादी को अटेंड --

लोग इजी ट्रेवल कर सकते हैं और इजी अपनी कार ड्राइव कर सके--

मशीनें पड़ी हुई है यहां पर हर टाइप की मशीनें पड़ी हुई है।

बड़ी शॉप का ऊपर एक हाट की शॉप में बना हुआ है जिसकी कलरिंग बहोत अच्छी हो रही है।

इंडिया लिखा हुआ है वो येलो कलर से लिखा हुआ है जिससे बहुत अच्छा लुक आ रहा है।

कलर रेड कलर है और बहुत सारा बटे बटे कलर येलो कलर है।

यह बहुत अच्छा व्यू आ रहा है शादी का। शादी की डेकोरेशन बहोत अच्छी की गई है।

और इस घर के पीछे बहुत सारे ट्री हुए हैं और ट्री के ऊपर भी आप देखा जाए--